बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग काफी पुरानी है। इस बिल्डिंग पर बोहोत सारे आदमी पहले रहते थे।

यह पाये तल्ले की है । इस बिल्डिंग में बहुत सारे आदमी रहते हैं | इस बिल्डिंग के किनारे एक सड़क है ।